दिखाई दे रहे हैं और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

फोटो में एक बैटरी वाला ऑटो दिखाई दे रहा है।

बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें एक--

एक डिवाइडर भी बना हुआ है सामने एक फ्लाई ओवर भी है और आस पास में पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

घर दिखाई दे रहे है और--

अ मने एक मैंने गेट दिखाई दे रहा है जिस पर बहोत सारा शिसा लगाया हुआ है।

इस फोटो में एक खेत दिखाई दे रहा है जिसके आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

धार्मिक चर्च दिखाई दे रही है जिसमें एक--

पीछे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हैं जिसमें बोहोत सारे गिफ्ट पड़े हुएं हैं और--